इस तस्वीर में मुझे कुछ घर--

इस तस्वीर में मुझे एक रोड दि--

इस तस्वीर में मुझे स्टेट बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक मेडिकल दी--

तस्वीर में मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक सोफा दि--

में मुझे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी सजावट दिखाई दे रही है।

तस्वीर में मुझे एक ऑटो दिखाई दे रही है।